पत्थर मिलते हैं | यहाँ से लेने में यहाँ पे

यहाँ शादी होती है एंगजेमेंट होता है |

और उसके इधर बहुत बड़ा फील्ड है |

जहाँ पे देखिये बहुत सारे तरह-तरह के केक मिलते हैं।

वर्क नहीं किया जहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं |

यहाँ है यहाँ पे कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं छोटा-सा इतना भी --

ये एक उम्म उम्म मॉल है छोटा सा जहाँ --

गो एम

हम्म ये एक फील्ड जैसा है |

प्लेट में रखा हुआ है |